एक सड़क दिखाई दे रही है।

और इसकी सता पर कुछ लोग बैठे हैं।

और दूर - दूर तक कुछ हरी - हरी पहाड़िया दिखाई दे रही है और साइड में नाव है।

जिसके बगल में दो कुर्सियां रखी हुई है।

यहाँ पर ग्रीन- ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ प्लांट्स और ट्री दिखाई दे रहे हैं।

और धुंधला-धुंधला मोसम दिखाई दे रहा है और--

गाड़ी दिखाई दे रही है और --

पेड़ दिखाई दे रहा है और रस्ता दिखाई दे रही है।